जिसमें घर बनाया जा रहा है।

यह तस्वीर एक टायर का गोडाउन लग रहा है।

इस तस्वीर में एक मैदान नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक खाली मैदान नजर आ रहा है।

नीचे लाइफ इंश्योरेंस भी लिखा गया है।

ऐसा लग रहा है किसी पूजा के बाद किसी--

तलाब के किनारे किनारे में बहोत सारे पेर लगाए गए हैं।

एक ग्रे कलर की स्कूटी भी--

एक तरफ बांगर पावर लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक कपड़े का शोरूम नजर आ रहा है।

एक तरफ एक पेर भी नजर आ रहा है।

तस्वीर को देखके ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन से कंपनी का पेट्रोल पंप है।

उसके सामने एक पुराना घर दिख रहा है।

ये तस्वीर किसी गांव का लग रहा है।

जिसका बाल कटिंग किया जा रहा है।